जो काफी छोटी- छोटी है बीचमे ऊपर जो सब से पहले हम को बताया था एक भोलेनाथजी की मूर्ति है जो की बैठी हुई हेटाइलों में ।]

जो हम देख पा रहे हे सामने की तरफ एक संमरोजम से बनी हुई एक मूर्ति को जो की काफी प्यारी और सुंदर लग रही हे और उनके पीछे जो बैकग्राउंड हे जो काफी अच्छा और बहुत प्यारा बानो कैहे .

पिक्चर हम देख पा रहे हे एक एंट्री जेसे गेट को जो की सायद किसी बिल्डिंग उस बिल्डिंग मंदिर के अंदर जा रहा हे।

और उसके चा तीनों तरफ हमे बड़े बड़े पेड पौधे और ऊपर खुला आसमान देखने को मिल रहा हे।

और हमे अ कुछ रेक्स नजर आ रहे है जो के लोहे के है वहाँ पर रखी हुई बहुत सी किताबे और कुछ पुरानी पुरानी सी दीवाले नजर आ रही है।

पिक्चर मे हमे ब्राउन कलर के बहुत सारे केबिस जिन मे लिखे नम्बर्स हमे दिख रही है।

ऊपर सीलिंग से लटकता हुवा फॅन और बल्ब टाइल्स से बनी हुई दीवारे और टाइल्स से बने हुवे फर्श हमे नजर आ रहे है जो की बीच बीच मे बैठे हुवे केबेज मे कुछ लोग भी हे

जमीन से हल्की सी ऊपर की ओर सीढिया जाती हुई नजर आ रही हे नीचे जमीन पर एक खड़ी स्कूटी नज़र् आ रही हे ऊपर की ओर फ्लोर्स पर सीढिया जाती हुई नजर आ रही हे और कुछ विंडोज़ हमे दिख दिख रही हे।

जिस मे हमे साइड मे टेबल नजर आ रहे हे। टेबल पर रखा हुवा मॉनिटर कुछ कपड़े बहुत सी किताबे और बहुत सी अलमिराज छतों पे लटकती हुई लाइटेऔर पंखे--

इस पिक्चर मे हम एक बड़े से हॉल को देख पा रहे है जिस मे लगी हुई बड़ी बड़ी विंडोज़ जो की बंध है इस टाइम कुछ वहा पर इलेक्ट्रिक बोर्ड देखने को मिलरहे है एलेक्ट्रिक्स वायर्स भी लगी हुई है।

और वहा पे हमे साइड मे सीमेंटेड हाथी देखने को मिल रहे है ऊपर खुला आसमान जिस मे बादल घूम रहे है।

यह यहा पे हमे बहुत सी अलमिराज लाइन से लगी हुई नजर आ रही हे जिन के ऊपर रखे हुवे कुछ बुक्स किताबे बन्डल्स मे नजर आरहे .

किताबे बहुत सी नजर आ रही हैं अलमिराज रखी हुई हैं और चारों तरफ किताबे ही किताबे हैं।